मुझे इस फोटो में बर्थडे डेकोरेशन नजर आ रहा है मुझे इस फोटो हॉल नजर आ र --

मुझे इस फोटो में पर्दे नजर आ रहे हैं।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

मुझे इस फोटो में फ्लावर नजर आ रहा हैं मुझे इस फोटो में कैफे नजर आ रहा --

मुझे इस फोटो में कुर्सी नजर--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

मुझे इस फोटो में हरियाली नजर आ रही है मुझे इस फोटो में--

मुझे इस फोटो में कैफे ओपन नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में मैदान नजर आ--

मुझे इस फोटो में दो वर्कर्स नजर आ रहे--

मुझे इस फोटो में कैफे नजर आ र--

मुझे इस फोटो में वॉयर नजर आ रही है।

ट्रक नज़र आ रहा है मुझे इस फोटो मे--

मुझे इस फोटो में रिसेप्शन नजर आ--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

मुझे इस फोटो में सोफा नजर आ रहा है।